अ दो कार यहां पे खड़ी हुई है। एक बाइक है और एक बड़ा सा पेड़ है यहां पे।

और समुद्र पूरा नजर आ रहा है नीला नीला इसके अंदर।

इसके अंदर बच्चों के टॉय रखे हुए हैं जिसमें से गुड़िया रखी है फुटबॉल है और टेडी बेयर है कुछ--

ऊपर वॉल कुछ नेम प्लेट व्हाइट कलर की लगी हैं।

इसके अंदर एक बड़ी सी दुकान नजर आ रही है जिसके पी पीछे वाल पीले कलर का फर्नीचर बना हुआ है पूरा।

इसके अंदर एक बड़ी सी दुकान नजर आ रही है जिसके ऊपर बड़ी बड़ी स्पेलिंग से कुछ लिखा भी है।

इसके अंदर एक गाड़ी खड़ी है जिसके ऊपर एक लकड़ी लगी हुई है लंबी सी जिसपे आदमी चढ़ रहे हैं।

इसके अंदर एक हरा हरा कपड़ा लगा हुआ ऊपर की ओर नजर आ रहा है।

एक बड़ा सा व्हाइट और ब्लैक कलर का काउंटर लगा हुआ है जिसके पीछे लेडिस बैठी हुई है।

सामने वाले दरबार बहुत बड़ा शीशा लगा है और बहुत--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

इसके अंदर छत पे बहुत सारी डिजाइन बनी हुई है।

उसी के साइड में लकड़ी की डिजाइन बनी हुई जिसके अंदर बहोत सारी लाइटें भी लगी हुई है।

उसी के पीछे वाल बड़ा सा ग्राउंड नजर आ रहा है जिसके अंदर छोटे छोटे से पेड़ लगे हुए हैं।

बहोत सारे कपड़े टंगे हुए हैं यहां पे पीले कलर का हरे कलर का रेड कलर में कपड़े हैं यहां--

इसकी दीवारों पे व्हाइट कलर का पेंट हुआ है और छत पे व्हाइट कलर का पेंट हुआ व्हाइट कलर का एक पंखा भी है।

उसी के ऊपर एक स्टेज बना हुआ है जिस पे दूल्हे की खुशी रखी हुई है।

इसके अंदर दो बत्तख दिखाई दे रही है बड़ी सी।

इसके अंदर बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं जिसमें से कुछ बड़े पत्ते वाले भी पेड़ है और कुछ छोटे पत्ते वाले भी।

और हरे हरे पत्ते है इसके अंदर और पीले वाले बहुत सारे फूल भी नजर आ रहे हैं पेड़ में।